और वहां पे खिड़की भी लगी हुई है और एक गेट सा बना हुआ है और गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है और वहां पे सीढ़ियां भी हमें नज़र आ रही है नीचे गेट के और वहां पे --

ये पूरा बो बड़ा सा टाइल्स बिछा हुआ है पूरी जमीन पे और वहां पे एक अ ब्लु कलर की शर्ट पहना हुआ है नीचे ब्लैक अ पेंट पहनी हुई है | वो आगे की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है। उसने अपने हाथ में कोई बेग सा लेके रखा हुआ--

हम देख पा रहे निचे की तरफ जो टाइल बिछी हुई है काफी शानदार और शाइनिंग सी लग रही है। ऊपर की तरफ भी हमें कुछ लाइटे वगैरह जलती हुई नजर आ रही है और हम देख पा रहे है हरे केबिन में एक इंसान बैठा हुआ है।

देख पा रहे की यहा पे एक रोड देखने को मिल रहा है रोड पे एक बूढ़ा आदमी हमे छाता लिए हाथ मे चलते हुए देखने को मिल रहा है जिसके सफेद बाल है और साईड मे हम देख पा रहे है की बाइक खड़ी है और दूसरे साइड एक स्कूटी खड़ी है।

देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई शादी वगैरह टाइम चल रहा है। रात का समय हो रहा है जिस वजह से वहाँ पे नेचुरल लाइट हमें देखने को नहीं मिल रही है। बस आर्टिफीसियल लाइट्स की रौशनी हमे देखने को मिल रही है और वहाँ पे --

इस पिक्चर में हम देख पा रहे है की यहां पर हमे एक बड़ा सा रूम जैसा कुछ अ देखने को मिल रहा है वहा पर काउंटर से लगे हुए है और साइड में हम देख पा रहे है कुछ लोगो को खड़ा हुआ देख पा रहे है एक लेडिस को खड़ा हुआ देख पा रहे है हम यहां पे --

देख पा रहे हैं हमे एक हमें एक टेबल देखने को मिल रहा है जो कि काफी पियडा सा प्यारा सा लग रहा है और वो पूरा टेबल जो है वो क्रीम कलर का टेबल है और हम देख पा रहे हैं वहा पे काफी सारी ट्र ट्राफीज और मेडल रखे हुए हैं जो कि गले में टाँगे जाते है दोनों साइड में हम देख पा रहे हैं क प्यारे से --

और वहा पे एक साइड मे भी हमे एक ओर बोर्ड देखने को मिल रहा है जोकि पूरा व्हाइट कलर का है इसमे भी डिफ्रन्ट-डिफ्रन्ट कलर्स मे लिखी चीजे हुई है।

तो यहाँ हम देख सकते है की एक दुकान है और उस दुकान के अंदर आरती का कोई सामान बिक रहा बिकता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। वहाँ पे पीछे की तरफ बोहोत सारे रैक्स सारे वगैरह लगे हुए है ।